और उसके नीचे बहुत बड़ा खाई है और उस--

और इसके हाथ में कुछ सामान है यह टेबुल पर बैठा हुआ है इसके साइड में कुछ कोट भी टांगा हुआ है।

और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है।

एक खिड़की है जोकी खुला हुआ है।